एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम श्री--

एक हॉल दिखाइ दे रहा हैं हॉल में दो टेबल है एक टेबल पे एक अंकल किसे के साथ टेबल टेनिस खेल रहें हैं।

पहाड़ से झरना बेहतर दिख रहा है झरना नीचे जा रहा है।

एक होटल दिखाई दे रहा है होटल में गुब्बारों से सजावट की गई है गुब्बारे--